एक महिला अपने बच्चे--

जहां लेडीज कपड़े मिलते--

तस्वीर में बाटा का शो रूम दिख रहा है।

में आ लोगों की--

आंगन रेस्टोरेंट बिल्कुल प्योर वेज रेस्टोरेंट --

जहां कैरम बोर्ड भी पड़ा दिखाई दे रहा है और--

पीछे झील दिखाई दे रही है।

यहा पेड़ लगे हैं।

है यह पीछे वर्कर काम कर रहे--

इस तस्वीर में आप सुविधा का शो --

बाहर गाड़ी खड़ी दिखाई--